कपड़ो की दुकान है जिसमे कपडे रखे हुये है शर्ट है जिसमे बहुत सारी उपर शर्ट में एक एल ई डी लगी हुई है एक लड़के का पोस्टर लगा हुवा है और सामने की तरफ गेट भी है और ये एक नीचे इंसान भी --